और यहाँ पर एक और लेडीज {ladies है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ऊपर में झण्डा- उंडा है। और ये बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया है और अच्छा है।}

पर ये होटल में ये सब सामान है ऐसा लिखा हुआ है और ये देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है।

यहाँ बहुत सारे घर सब है और यह रोड साइड का है। और यह बहुत अच्छा है। और इधर देख सकते हैं यहाँ मोड़-वोड़ पर ट्रक - ब्रक भी है।